जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है।

यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

आसमान में बादल हल्के से छाए हुए है।

तरह तरह के कपड़े रखे हुए हैं।

यह हिमाचल प्रदेश के शिमला का दृश्य है यह एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम आशियाना है।

यहां पर आप एक बड़ा सा हॉल देख सकते हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके की पार्टियां भी कर सकते हैं।

यह एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान है यहां पर अलग अलग तरीके के सौंदर्य प्रसाधन रखे हुए हैं।

साथी में लाल रंग का एक कंबल रखा हुआ है।

जिसमे अलग अलग तरीके के कपड़े लगे हुए हैं।

इसके साथ इसमें एक ड्रॉज बना हुआ है जिसमें बहुत से खाने हैं और साथ ही में एक्सरसाइज के लिए बहुत से उपकरण हैं।

यह किसी रेस्टोरेंट की तस्वीर है जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

जिसमें कुछ टेबल और कुर्सियां रखी हुई हैं।

वॉलपेपर लगाया गया है दीवारों को पेंटिंग से सजाया है।

इसमें आज जा रहे है और कुछ व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे है।

एक संकरी गली है और दोनों ओर पेड़ लगाए हुए है।

यह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के अपर बाजार के पुलिस चौकी की--